इसके आस-पास पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं यह घर संतरी और ग्रे रंग से पेंट किया गया है।

इस दृश्य के अंदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हलूशन गंज जह जहानाबाद का दिखाया गया है।

इस दृश्य के अंदर इस जगह को लाल रंग की चुन्नी से सजाया गया है।

इस दृश्य के अंदर पुराने समय में बनाया गया एक घर दिखाई दे रहा है जो कि बहोत ही जिढ़ अवस्था में है।

सामने वाली बिल्डिंग में एक बैनर के ऊपर डिग्री लेते हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है।